हरी पत्तियाँ लटक रही हैं। कई गमले लगे हैं शो सीप के।

टेबल पर एक कैंची और एक पेन रखा हुआ है।

छोटी छोटी लाइट लगी हुई है शीशा भी लगा है।

छोटे पौधे भी हैं आसमान भी दिख रहा है।

कमरा है कमरे में टेबल कुर्सी है।

बगल में छोटी सी पहाड़ी भी है मैदान में नाँव भी खड़ी है।

एक दुकान है। जिसमें रैक बने हुए हैं। रै --

छोटी छोटी गुड़िया रखी है। बैट बॉल भी रखा है।